और सामने की तरफ पत्थर और गिरता पानी बहोत सुंदर दृश्य दे रहा है।

नजर आ रही है चित्र बहोत सुन्दर लग रहा है।

लेटेस्ट हिमालय दिख रहा है बहोत सुन्दर लग रहा है अंदर की तरफ --